जैसा कि हम इस फोटो में देख रहै है यह होंडा की एक कार हैं।

यह कुछ लोग भी देख रहै हैं यह फुल ऐसी है यह लाइटिंग लगी हुई है और यह बहुत सुंदर दिख रहा है।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

सुंदर बना रहे हैं जो कि उसके सुंदरता की शोभा को बढ़ा रही है यह एक प्राचीन इमारत है जो की बहुत साल पहले बनवाई गई थी।

जैसा कि हम इस फोटो में देख रहे है यह कृष्णा शू शोरूम हैं।

यह महात्मा बुद्ध की जयंती की तस्वीर की मूर्तियों का सामुहिक चित्र दिखाई दे रहा है इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई है।

तथा पास में तथा पेड़ -पौधों की व्यवस्था भी सुंदर रखी गई है जिससे महात्मा बुद्ध की मूर्ति को सुंदर रूप प्रकट हो सके --

यह सामूहिक कार्यक्रम की सामूहिक चित्र दिखाई दे रही है इसमें सारे बहुत सारे बच्चे है जो पेड़- पौधों को उगाने का वन रोप अक्षर रोपण का --

ध्यान कर रहै है तथा खाद बीज के द्वारा होने की सशक्त क्रिया को वो अपने द्वारा मेहनत करके आगे जाने का प्रयत्न कर रहै हैं।

जैसा की हम इस फोटो में देख रहै हैं यह एक रोड है यहाँ ऑटो टैक्सी --

यह एक किले का सामूहिक चित्रण दिखाई दे रहा है जिससे निकल कर दूसरे पार जाने के लिए बनाया गया है तब बहुत पुराने समय का हो जाने की वजह से--

यह एक डाकखाने का सामूहिक चित्रन है जिसमें डाक आवेदन के द्वारा तथा डाक लाकर भी प्रोवाइड किए जाते है इसमें छोटे-छोटे कन्याओं के लिए--

यह एक बैंक के अंदर का सामूहिक चित्रण दिखाई दे रहा है तथा जिसमें बैंक के कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था दिखाई दे रही है तथा इसमें --

पुस्तकों के संबंधित दुकान है जिसके आधार पर बड़ी से बड़ी कक्षाओं से संबंधित बुक का यहाँ से क्रय-विक्रय किया जाता है जो कि इस पकार है।

यहा चैनल गेट लगा हुआ है और बाहर की ओर बाइक भी रखी हुई है।